यहाँ सैलून पर एक आदमी कटिंग काट रहा है मशीन द्वारा अच्छी फैन्सी कटिंग काट रहा है बढ़ियां कुर्सीयां है पर्दे भी लगे है अच्छे चेहरा साफ कर देते --